है जहां बहोत सारे पार्सल नजर आ रहे है।

यह तस्वीर एक गांव की--

यह तस्वीर एक हॉस्टल के--

है जहां बहुत बड़ी मेढ़े --